और ये जहाँ से बिजली सप्लाई होती है वो पावर प्लांट है बाहर में हरे-भरे घास दिख रहे हैं।

पता नहीं ट्रांसपोर्ट है क्या पता नहीं सामने एक गाड़ी लगा हुआ है और एक बाइक भी लगा हुआ है और घर मे कुछ लाइट ए जल रही है।

ये एक घर हें जो तीन सेकेन्ड फ्लोर टू फ्लोर का घर है।

ये बिल्डिंग दिख रहा है लग रहा है की यहाँ कोई क्लिनिक है ऊपर मे लिखा हुआ भी है क्लिनिक |

ये शादी का ही पंडाल लगा है सामने मे लग रहा है के लड़के लड़कियों का एक इमेज लगाया गया है| पंडाल के बीच मे और साइड मे एक स्टेज दिख रहा है।